शॉपिंग शॉपिंग मॉल है यहाँ पर अनेक प्रकार के कपड़े है और बहुत अच्छे है यहाँ शॉपिंग मॉल में लाइट जलते लाइट जले हैं जले हुए है।

एक तरफ बांस भी है और ये इस घर में --

यहाँ पर मूर्ति के दुकान है यहाँ पर मूर्ति अनेक प्रकार के है और मूर्ति अनेक रंगो से है।

यहाँ पर मंदिर है और मंदिर सफेद कलर से कलर किये गए हैं और यहाँ पर मंदिर के ऊपर में घड़े जैसे पाँच छौ ठो है और यहाँ पर बड़े-बड़े प पेड़ हैं और ईटें यहाँ पर ईटें का दिवार है और बहुत अच्छा दिखाई दे --